और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है दूर और कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं ये रोड है इस साइड से गया हुआ है।

यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी है बिल्डिंग के ऊपर कई सारी लाइटे लगी हुई है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे स्कूटी रखी हुई है कुछ लोग अंदर है कई सारे लाइटे लगी हुई यहाँ पर।

यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे कुछ गइयाँ बच्चे बंधे हुए गाय के और यहाँ पर अंकल दिखाई दे रहे है दूर --